ऑर्डर पर केक तैयार होते--

यह एक मिट्टी का लेप--

अंदर दिखाई दे रहे हैं।

डेंटिंग पेंटिंग का कार्य--

जिसका लुक बहुत सुंदर है।

तथा कमरा बहुत साफ रखा गया--

डांस करते हुए हैं।

अनुराग्स कैफे देख रहे हैं।

यह एक बहुत सुंदर कैफे है।